दिए गए इमेज में पॉल्ट्री फार्म दिख रहा है। जिसमे --

इमेज में बोहोत ही सुन्दर सीन दिखाई दे रहा है। जिसमे नीले रंग के बादल हैं।

सामने एक पानी टंकी भी दिखाई दे रही हैं। रेलवे पटरी के अ इधर-उधर हरे-भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

मशीनें हैं जिससे एक्सरसाइज किए जाता है और --

और अ फ्लोर अ ब्राउन लाइट ब्राउन कलर का है।

ब्राउन डार ब्राउन कलर में हैं।

दिए गए में नीले रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है। उसकी बॉर्डर सफ़ेद रंग की है।

सामने दिए गए चित्र में टेनिस टेबल --

और औरतें भी बोहोत सुन्दर लग रही --

रेलवे स्टेशन की पटरियां हैं।

और हैं जिन में से एक श्री कृष्णा जी हैं उनके ऊपर एक छत्र है। छत्र के ऊपर --

जिसका नाम गोल्डन पब्लिक स्कूल हैं इसके दीवारें लाइट पिंक कलर में हैं और --

घास से बॉर्डर बना हुआ है पीले रंग का झंडा --